बाइक ओ यहाँ पे खड़ी है। साइकिल खड़ी है। एक लकड़ी का स्टैंड बना हुआ है यहाँ पर और चददर लागा हुआ है। आसमान दिखायी दे रहा --

यहाँ पर हमें एक सैलून दिखाई दे रहा है और जिसमें एक व्यक्ति है। सर दिख रही है।

यहाँं पर हमें एक बड़ा सा बु ब्रिज दिखाई दे रहा है और जो की ऑरेंज और रेड कलर में पेंट है और इसके साथ ही बाहर दिखाई दे रहे उसके ऊपर कुछ तस्वीर बनी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने वाइट कलर की कैप लगा रखी है नीचे वाइट कलर का शर्ट पहन रखा है और इसी के साथ वहाँ कुछ वायर को --

तो यहाँं पर हमें बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं और जिन्होंने शॉल भी ओढ़ रखा है और व्यक्ति हम भी दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ ऊपर अ छत दिखाई दे रही है वाइट कलर की।

यहाँ पर एक बाड़ी सी अ हवेली दिखाई दे रही है हमें जिसके बाहर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ पर हमें अ एक नदी दिखाई दे रही है। जिसके इसके नीचे पानी भरा हुआ है और इसमें पानी बहुत सारा दिखाई दे रहा है और पूल बने हुए हैं। यहाँ पर बड़े-बड़े काफ़ी बड़े-बड़े और उसमें रेलिंग भी बनी हुई हैं।

कुछ व्यक्तियों ने उनके आस पास खड़े हुए हैं बच्चे भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमें पत्तियाँ दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर की फ्लावर्स दिखाए दे रहे हैं रेड कलर और वाइट कलर में।

यहाँ पर हमे कुछ बच्चे दिखायी दे रहे हैं जोकि नीचे बैठे हुए हैं | उनके पास किताबें पन्ने हैं।

ऊपर से नीचे से वाइट कलर के और दीवारें दिखाई दे रही है वाइट कलर में --

यहाँ पर हमें सड़क दिखाई दे रही है | सड़क के किनारे कुछ व्यक्ति खड़े हुए है | बाइक रखी हुई है यहाँ पर और इसके साथ यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँं पर हमें एक अ मतलब बोर्ड दिख रहा है ज जो के बैंक का है ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है और नीचे यहाँं पर बाइक ऑन खड़ी है।

आउट पिंक और रेड कलर में यल्लो कलर में कुछ व्यक्ति यहाँ बैठ कर उसे बेच रहे हैं कुछ व्यक्ति खड़े-खड़े होके खरीद रहे हैं उसे और यहाँ कुछ बॉक्स रखे हुए हैं।

बलून्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं येलो कलर में ब्लैक कलर में। कुछ डेकोरेट किया हुआ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर बॉक्सेस में।